कुछ मछली कटी हुई है कुछ गोटा रखी हुई है।

अत्रि दिख रहे है रंग बिरंगे टाइप के पूरे--

और वाइट में रेड में फूल है बगल में बाल्टी है रोड है एक लेडीज है।

एक आदमी चेयर पर बैठा हुआ है।

इस पर एक बिल्ली है बैठी हुई एक बड़ा सा ड्रम --

हम बिस्किट्स हैं लाइट है वाइट-वाइट --

पे कुछ सूत्री टाइप्स दिए हुए हैं कुछ फोटो पे मालच--